और ऊपर की तरफ बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई है और यहां पर बहोत सारे अह डिब्बे रखे हुए हैं इन्हीं सब चीजों के।

और और एक पेड़ है जिसकी कटिंग हो रखी है और एक पेड़ यहां पे है खजूर कटा है गा और यहां पर जो है जाल लगा हुआ है।

एक मेडिकल है और यहां दो आदमी बैठे हुए हैं एक ने चश्मा लगा रखा है और एक ऐसी बैठा हुआ है और इन अं चश्मे वाला आदमी जो है सेल्फी ले रहा है और यहां पर बहोत सारी --

और एक ऊपर आने के लिए और पानी में जाने के लिए एक वहां पे भी लोहे की--

और दूसरे ने खाली कप पकड़ रखा है उसके अंदर भी चाय है।

ये एक यहां पर जो है यहां पर एक कोई काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का यहां पे--

और यहां पे एक तराजू भी रखा है काउंटर के ऊपर और इधर की तरफ है जिसमें आइसक्रीम रखी हुई हैं मतलब ये बहुत बड़ी दुकान है और बहुत स्टैंडर्ड दुका--